--तस्वीर में किसी होटल के अंदर का रूम दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक बिस्तर बना हुआ है बहोत सारे तकिये है और एक तरफ सोफा रखा है लाइट जल रही है पर्दे डले हुए है।

उस तरफ बच्चियो की फ्रॉके टंगी हुई है।

और एक दुकान बनी है जिस पर अँग्रेजी मे बाटा लिखा हे उस तरफ एक गुलाबी सी इमारत बनी हुई है जो कि मंदिर की तरह लग रही है।

इस विंग मे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की नारंगी और सफेद रंग की जॅकेट पहना है पीली रंग की टोपी पेहना है और वो कुछ पाइप के अंदर सुधारने का काम करता हुआ नजर आ रहा है।